नीचे की जमीन मिट्टी की है और घास के घंजार से भरी चुकी है।

उसके सामने दो कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

सजावट के अंदर भगवान की प्रतिमा रखी गई है और एक आदमी सामने ही मोबाइल की मदद से वीडियो भी बनाता हुआ देखा जा रहा--

इस इमेज में हम बुक्स का एक बंडल देख सकते हैं।

और सामने ही एक बड़ा लाइट हाउस भी बना हुआ है।

अमने की दीवाल हमें गुलाबी कलर की दिख रही है।

इस पर दशमेश सेवन एलेवेन सुपर सेलर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है।

सामने ही हमें एक बड़ा घर दिख रहा है जिस पर फंक्शन की तैयारी हो रही है।

इस इमेज मे हम ऊपर एक एल_इ_डी बोर्ड देख सकते हैं जिस पर कन्नड़ और इंग्लिश में लिखा गया है इंग्लिश में होटल गेटवे कर्नाटक लिखा हुआ है।

के नीचे ही हम एक दुकान देख सकते है जिस पर शीशे का काउंटर लगा है।

पानी का समूह है जिसे नदी भी बोल सकते हैं और बीचो बीच जो पुल निकली हुई है उस पर कई सारी गाये अलग अलग रंग की बैठी हुई है।

में यहां पर टेंपो दिख रहा है और एक आदमी पैर वाला रिक्शा भी लेकर जा रहा है।

इनके सरों पर गमछे भी पड़े हुए हैं जो की अलग अलग रंग के हैं।

उसके नीचे एन_आई_एस_ओ नाइन हंड्रेड वन ट्वेंटी फिफ्टीन सर्टिफाइड कंपनी भी लिखा हुआ है।

सीमेंट से बनी हुई दीवार है इस पर आर_सी_सी का डिजाइन दिया गया है और उसके नीचे काफी सारी घास है।

जिसमें से एक आदमी ने पूरा किट पहन के रखा है।

ऊपर दोनों तरफ एल_ई_डी टाइप्स पेंटिंग लगी हुई हैं।

नीचे जमीन पर टाइल्स बिछा हुआ है जिसका रंग सफेद है।

इस इमेज में हम कुछ मोटरसायकल और स्कूटीज स्टैंड में लगा हुआ देख सकते हैं।

और सेकंड कलर पीला किया गया है आस पास कई सारी छड़ भी रखे हुए है।